दोस्तों ये एक मंदिर है। मंदिर के साइड में एक तालाब है। और उसके बाहर हरी घास लगी हुई है।

मंदिर बहुत ही पुरनी समय का लग रहा है और इस पर सफेद रंग हो रहा है और उसके साइड में पेड़ भी हैं ।

एक मोटरसाइकिल पर एक लेडीज और आदमी जा रहा है और वहाँ पर एंड में दो साइकिल भी है जो एक गाँव की तस्वीर मालूम पड़ती है।

कुछ कलाकार कलाकारी दिखा रहे है और एक औरत मंच पर खड़ी हुई है जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है और वो डेस्क पर खड़े होकर समाचार चला रही है।

एक मोटर साइकिल है। गाड़ी का रंग सफेद है और मोटर साइकिल काले और लाल कलर की है। गाड़ी बहोत पुरानी कन्डिशन की है।

और हम्युनीन स्पोर्ट्स है और केविलिटी रेस्टोरेंट है जो भारत जलपान भी देता है।